यह चित्र में यह कोई स्टेशनरी शॉप है जहां पर एक बड़ी सी जेरॉक्स मशीन रखी हुई है और रैक में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यहां पर एक नदी मे हाथी दिख रहा है उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है।

यहां नदी की में भी कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं और आगे में कुछ पत्थरों की चट्टान भी दिख रहे हैं।